ये किसी कोरी स्कूल या कॉलेज की कॉरिडोर की तस्वीर लग रही है।

ये किसी गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर लग रही है क्यूंकि यहां पे सारी गर्ल्स खड़ी हैं और ये लोग शायद कोई वृक्ष लगाने की कोशिश कर रहे हैं शायद ये लोग वृक्षारोपण की तैयारी कर रहे हैं और पीछे बहोत सारे कपड़े भी सूख रहे हैं।